साथ में हिंपैक्स पड़े हुए है।

रात में ही यहां पर हमें दीवारें दिख रही है वाइट कलर --

यहां पर बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

क्योंकि यहां पर वाइट कलर की ड्रेस में--

चार पिलर्स जो कि व्हाइट कलर के--

पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग्स दिख रही है।

जिसमें कि कुछ बोतल पड़ी हुई है।

यहां पर हमें दिख रहा है पीछे बहोत बड़ी दीवार जो कि पिंक कलर की है।

व्हाइट ड्रेस में एक लड़की दिख रही--

यहां पर हमें बड़ा सा ब्लू कलर का पोस्टर दिख रहा है।

पीछे कुछ येलो व्हाइट कलर की--

यहां पर हमें दिख रहे हैं कुछ सामने य येलो कलर के फूल।

कुछ पत पत्ती वाले फूल दिखाई दे रहे हैं।

ग्रीन कलर ही पार्क दिखाई दे रहा है।

पीछे ग्रीन कलर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े।

कुछ व्हाइट कलर की लाइटें दिख रही है।

इसके ऊपर ही टाइलें लगी हुई नजर आ रही है।